यहाँ पे एक नाली बनी हुई है।

यहाँ पे एक आदमी बोट चला रहा है।

वह दोनों बोट पे बैठे हुए हैं।

यहाँ पे बहोत से फूल फल रखे हुए हैं।

जिस पे पिक्चरों की फोटो छपी है।

यहाँ पे बहोत कूँड़ा कचरा फैला हुआ है।

यहाँ पे एक लाल रंग का झंडा लगा हुआ है।

चेयर रेड कलर की हैं।

यहां पे एक टेबल पड़ी हुई है।

आस-पास बिल्डिंग बनी है।

यहाँ पे एए पानी निकल रहा है।

यहाँ पे बहोत सी मछलियाँ पड़ी हुई हैं।

ऊपर एक बैग रखा है।

यहाँ पे बहोत से --

यहाँ पे बहोत से लोग आस-पास खड़े हैं।

यहाँ पे एक और बाल्टी है।

यहाँ पे एक बोट चल रही है।

दुकान है यहाँ पे एक --

यहाँ पे झालर भी लगी हुईं हैं।

तिरंगा लगा हुआ है।

एक आदमी मास्क लगा कर बैठा हुआ है।

प्लेग्राउंड है। इसमें प्ले --

यहाँ पे बहोत सी बाइक और साइकल खड़ी हैं।

लड़के ने नीली शर्ट पहन रखी है |

यहाँ पे बहोत से पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ पे छोटी-छोटी घास उगी हुई हैं।

यहाँ पे एक स्कूटी खड़ी हुई है।

मछलियां ठेले पे रखी हुई हैं।

आसमान नीले रंग का है।

यहाँ पे एक बस खड़ी हुई है।